यह एक स्कूल है जो कि यहां बोहोत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है।

दिक्कत नहीं होता हैऔर बहुत सुविधा है ।

देखने को इस जगह में कोई रहता नहीं है। बहुत लोग यहाँ घूमने जाता है पिकनिक मनाने जात --

ये यहाँ बहुत सारा देवता का मूर्ति बनाया है।